खिड़कियों और दरवाजे नजर आ रहे हैं और सोफा रखा हुआ है उस पर क्वेश्चन रखे हुए हैं टेबल अ --

एक गार्डन बना हुआ नज़र आ रहा है उसमे पीले फूल लगे हुए है पेड़ों में और हरे भी पेड़ लगे हुए है ।

इस तस्बीर में हमें अ लड़कियाॅं और लड़के भी हैं दो लाल टी_शर्ट और पिले--

टीशर्ट पहनी हुए है और वो दौड़ लगा रहे है हमे नज़र आरहा है की वो दौड़ लगा रहा है।

हमे एक जगह पर कुर्सी टेबल रखे हुए और जिस पर लैपटॉप रखा हुआ है।

और अलमारी बनी हुई है और फोटोकॉपी मशीन नज़र आरही है और कबोट बने हुए है वो दिखाई दे रहे है।

हमे ये तस्वीर के अंदर एक बेड नजर आ रहा है जिस पर सफेद चादर और नीली भी अ दिख रखी हुई है और सफेद--

येलो कवर दिखाई दे रहे है एक लैंप जल रहा है और नीले कलर के परदे डले हुए दिखाई--

इस तस्वीर मे हमे हरी हरी घास के बीचों बीच गोल अ सिडीनुमा एक आकृति बनी हुई है।

पेड़ लगे हुए है कुछ लोंग बैठे हुए है और क एक आ कुछ लोंग चलते हुए नज़र आ रहे है ।

दूर एक छत्री बनी हुई दिखाई दे रही है और कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में हमें बहोत सारे महिलाओं के वस्त्र पन्नियों में रखें हुए नजर आ रहें हैं कुछ कपड़ा भीं हैं सुटिंग शटिंग का और--

इसमें अ साड़ी में डमी ऑरेंज कलर की लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है और पीले और नीले रंग की साड़ी भी लटकी हुई है ।

हमे क्रिचन का जो होता है वो बना हुआ है चर्च।

और साथ में और भी बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं एक महिला है और बाकि पुरुष है और उस शर्व कुर्सी रखी हुई है उसे पर जेनिफर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में बोर्ड लगा हुआ है उस पर केन्देर विद्याल चंडीगढ़ लिखा हुआ है एक गुलाबी रंग की बिल्डिंग है।

एक जो आदमी है वो टोपी लगाया हुआ है लाल कलर की टीशर्ट और अः पेंट पह ने हुए एक आदमी।

और सीढ़िया बनी हुई है सीढ़िया और दरवाज़ा बना दिख रहा है जिसमे बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

पौधे नज़र आ रहे है और एक ए ए ए महिला है जिसके हाथ में पाइप है और वो पेड़ों में पानी दे रही है ।

इसमे हमे एक पेट्रोल पंप नजर आ रहा हैं और पेट्रोल पंप के के पास ही तीन सफ़ेद कार खड़ी हुई नजर आ रही हैं ।

और दुकान के उपर घर बना हुआ दिख रहा है सबसे उपर पाणी की टंकी रखी हुई है।

एक हमे स्टेडियम नजर आ रहा है और स्टेडियम में दूर हमे--

दूर दूर तक अह हरी हरी घास लगी हुई है और सा चारों तरफ़ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है ।

यहा में एक सडक बनी हुई है सडक के उस तरफ हमे--

अ एक गार्डन एरिया नजर आ रहा है गार्डन बना हुआ है जिसमे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हमे दिखाई दे रहे है।

तस्वीर में हमें बहोत सारे फल रखे हुए नजर आ रहे हैं केले अनार काले अंगूर रखे हुए हैं--

और आम भी है आम भी नजर आ रहे है रखे हुए और सेब है।

फुल लगे हुए है गुलाबी रंग के और पेड़ लगे हुए है जिसमे लाल लाल पतिया है।

हमें एक प्लेट में चावल और मीट रखा हुआ और एक जग रखा हुआ है ग्लास और--

इसमें अलग अलग केबिन बने हुए नज़र आ रहे है हमें एक नंबर डला हुआ नज़र आ रहा है और शटर है पंखा लगा हुआ है और शटर हमें उठे हुए नज़र आ रहे है और पंखा लगा हुआ --

हमें ये मेंस वियर हमें आदमियों के कपड़े अ की दुकान नजर आ रही है जिसमें--

इसमें हमें एक नाऊँ में दो बच्चे अ एक आदमी बैठ है एक बच्चे को लेकर ऐसा नज़र आ रहा है और सामने और नाऊँ है ।

और कुछ लोग बैठे हुए उस नाव में और पानी के अंदर हमे बदक तैरती हुई नज़र आरही है।

डाइनिंग टेबल में अः डाइनिंग टेबल और कुर्सियां जमी हुई है परदे लगे हुए है।

हमे एक फंगक्शन का अ ये दिखाई दे रहे है दृश्य जिसमे एक लड़की और भी है लड़कियां अ बैठी हुई है ।

एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पर राम डेरी लिखा हुआ है और उस डेरी के बाहर एक बड़ा नीले रंग का डस्ट्बिन --

हमे तस्वीर मे दिखाई दे रहे है ये पेड़ लगे हुए है और चारों तरफ हमे मकान बड़े बड़ी बिल्डिंगए बनी हुई नजर आ रही है।

हमें नजर आ रहा है नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं।